पेड़ पौधा लगा है यहां गाछी लगा है खूटा बना है जाली बना है चर का गजब मौसम किया है सफेद मौसम है हरा भरा गजब चीज है आम का पेड़ है बगीचा है बैठने में कितना मजा आता होगा आम खाने में कितना मजा आता होगा ये तो एक नंबर का चीज है।

राम मंदिर है बीच में पेड़ है--

क्या मस्त चीज़ है-है ब्लैक लिखा है तीन बलैक है बोर्ड है करने में मजा आता होगा--

बगीचा उइचा है बीच में फूल -ऊल है जमाई यार मजा आ जाता होगा जाने दो यार--

घर द्वार दिख रहा गाड़ी है लेक है हरा -भरा झील है बगल में एकदम कितना मज़्ज़ा आता होगा--

इतना अच्छा -अच्छा चीज़ है हवा ठंडा -ठंडा हवा आता होगा मज़्ज़ा आता होगा गज़ब चीज़ हैं।

मौसम एक नंबर है यहाँ कितना ठंडा-ठंडा हवा आ रहा है कितना पेड़-पौधा है कितना मजा आता होगा घूम बीच है पार्क है गजब मजा--